तीनवा आदमी स्मार्ट स्मार्ट खा तारल व मोबाइल चलावा तारल।

एगो आदमी ताक रहल बा इशर काफी अच्छा दुकान लागत